कुछ गाड़ी के कांच दिखाई दे रहे हैं तथा हमें एक शॉप की शटर बंद दिखाई दे रही है| हमें एक लाइट दिखाई दे रहा--

इस दृश्य मे हमे यहाँ पर एक बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ शॉप दिखाई दे रही है जिसकी शटर बंद दिखाई दे रही है कुछ सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

तथा यहाँ हमे यहाँ एक रोड दिखाई दे रही है।

हह इस दृश्य में हमे यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है तथा हमें एक टैंक भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है तथा हमें यहाँ कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ--

तथा यहाँ काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है जिस में ऑटो कार बाइक और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तथा हमें यहाँं पर कुछ फिसलपट्टियां भी दिखाई दे रही है हमें यहाँं पर ग्राउंड में हरे कलर की घास दिखाई दे रही है कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है तथा काफी सारे वायर भी दिखाई दे रहे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा हैं।